इसमें खिड़कियां में भी गुब्बारे लगे हुए हैं पंखा लगा हुआ है काले और पीले गुब्बारे हैं।

पूरी शाडीआइ लुगाई खड़ी है एक इसमें और बहुत दमादम हो रही है डाकोरेशन बहोत अच्छी है इसकी बहोत अच्छा लग रहा है देखके।

ये दुकान है। दुकान बहोत अच्छी लग रही है।

बहोत आई_डी स जो इनके पेपर दिखा रखे हैं।

ये बाईपास जा रहा है बाईपास पे बहोत सारी गाड़ियां जा रही है और यहां पे बहोत सारी फ्लैट दिखाई दे रहे है।

बहुत ही ज्यादा फ्लाइट टीन वगैरह भी डली हुई हैं यहां पे बहुत पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं फूल भी हैं।

मजेंटा कलर का कलर है बहुत ही प्यारा लग रहा है मंदिर बहुत अच्छा है।

यहां पे मेला लगा हुआ हैं जिसमें बहोत सारे झूले है बहोत सारे आदमी है यहां सामने काले--

सामान बहुत ही अच्छा लग रहा है जिसका कलर लाल पीले हरे।

यहां योगा है पार्किंग में योगा है बहोत सारी लेडिस बैठी हैं एक लेडिस ने संत्री व्हाइट और तिरंगा का चुन्नी पहनी हुई है व्हाइट --

यहां पे बोर्ड लगा हुआ है पेड़ पौधे हैं बाउंडरी बहुत अच्छी है।

ये मच्छी मार्केट है इस मार्केट में मच्छी का मीट मिलता है।

लग है यहां पे पिलरों के बीच में गली ग्रिल है।

सामने रास्ता आ रहा है पेड़िया है बहुत अच्छी लग रही है पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहां पे अलवीरे का पेड़ है।